कार्यालय भारतीय जनता पार्टी जिला मुजफ्फर न कमल का फूल है।

पुलिस चौकी आरआर केबल पुलिस चौकी अपाचे लाइट टूटी है एक इंडिकेटर टूटा है।

ओर अदर मशीन्स भी हैं। सामने ब्लू कलर की पुताई है।

प्राइवेट फार्महाउस है। लाइटें हैं घास है अच्छा सजा हुआ है।